सामने कुछ फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं उनके अंदर कुछ फ्लॉवर्स डले हुई हैं स्टील के बहुत सारे बर्तन डब्बे डिबोलिया रखे हुए हैं।

ये एक बोहोत ही खूबसूरत सा सैलून है पीछे की तरफ वाइट कलर का पेंट किया हुआ है एक क्यू आर कोड रखा हुआ है एक शोकेस के अंदर बोहोत सारी बॉटल्स रखी हुई हैं एक वशबेसिन लगा --

ये एक बहोत ही खूबसूरत सैलून है पीछे की तिरफ वाइट कलर का पेंट किया हुआ है एक क्यू र कोड रखा हुआ है एक शोकेस के अंदर बहोत सारी बॉटल्स रखी हुई है एक वह बेसिन लगा --

इन लोग कुछ पूजा कर रहे हैं सामने के तरफ एक मूर्ति बनी हुई है जिसके ऊपर एक गोल्डन कलर का पेंट किया गया है जो गोल्डन-गोल्डन नजर आ रहा है।